तभी एक वाटर पार्क दिख रहा है उसमे कुछ खेलने के लिए बच्चों के खलने के लिए खिलौने बने हुए है दिख रही है वो चढने के लिए सीडियाँ भी वहाँ पे है।

दिख रहा है बहुत सारा पानी दिख रहा है उसमे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे है और अ-- स्विमिंग पूल के ऊपर कुछ पौधे नज़र आ रहे है दूर तक कुछ---

और आसमान दिख रहा है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं सामने एक बगीचे के जैसा घास दिख रही कंपाउंड की दिन दिख रही वहाँ ]

और आसमान दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है अ-- पेड़-पौधे दिख रहे है और ये एक तरफ के रास्ते पर कुछ कार जैसे गाड़ी का दिख-- वहाँ पास सफेद कलर के

पे एक पार्क है पार्क का एक गेट बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ सामान है वहाँ पे और उसके नीचे एक गेट है लोहे का।

और उसपे कुछ अ-- जो वह उसके पास जो है एक बड़ा सा पोस्टर नज़र आ रहा है सामने से रास्ता है जाने-आने के लिए आसमान नज़र आ रहा है दिन का समय--

बुक का शॉप दिख रहा है वहाँ पे बहुत सारे किताबे दिख रही है कुछ वहाँ पे बाजु मे एक शॉप दिख रहा है वहाँ पे कुछ गद्दे रखे हुए नज़र आ रहे है कुछ औरते नज़र आ रही है वहाँ पे एक इंसान भी है।